उस तस्वीर में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक रेस्ट्रॉन्ट दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे दो खिड़की दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे खिलौने को समान दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।